और एक मगरमच्छ पीछे मुडा हुआ है और एक मगरमच्छ के ऊपर मछली है और एक का मुँह नहीं दिखाई दे रहा।

यह एक गैरिज है सामने की ओर ऑटो दिखाय दे रहा है वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक व्यक्ति खड़ा है और इस साइड स्कूटी है इस साइड मोटर --

यहाँ पर बाजार दिखायी दे रहा है जिसमे की फलों की और सब्जियों की दुकान दिखाय दे रही है यहाँ पर आजू बाजू पेड़ भी दिख रहे हैं सामने की और बिल्डिंग भी दिख रही है और यहाँ पर बाजार लगा हुवा है।

यहां घास दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बकरी है बकरी का कलर सफ़ेद और काला है और यहां पर बहुत सारी घास है कुछ दूरी पर कुछ बकरियां और है।

यह एक योगा क्लास दिख रही है जिसमें की बहुत सारी लड़कियां योगा कर रही है फर्स्ट नंबर पे रेड कलर के कपड़े पेहने एक औरत दिख रही है सेकंड पे ब्लैक और थर्ड पे रेड ऐसी ही बहुत सारी लडकियां दिख रही है।